और उसके नीचे एक ग्रेनाइट काटने वाला मशीन पड़ा हुआ है।

जिसके ऊपर कुछ कपड़े पड़े हुए हैं।

यहां पर एक टेबल के ऊपर कोई लकड़ी से बना कु--

हम यहां पर कुछ मशीन देख सकते है।

जिसके ऊपर ऊपर से सफेद कलर की लाइट गिर रही है।

यहां पर हम एक जिम वाला मशीन देख सकते हैं।

इस गाय के पीछे और एक काले कलर की गाय चारा खा रही है।

और बादल बहुत साफ दिख रहा है।

यहां पर एक आदमी नीला कलर का वस्त्र पहने खड़ा है।

यहां पर एक गोल आकार का सफेद कलर का कैफ़े है जिसका नाम छोटू महाराजा कैफ़े है और उसका --

इस हर कप मे अलग अलग तरह की चित्रकारी लगाई हुई है।

और इस खिलौना का डंबर है।

जिस पर एक पीले कलर में प्लेटिनम लिखा एक पोस्टर लगा है और उस टेबल के पीछे एक चेयर पड़ा है।

और नीले और काले कलर के बहुत सारे चेयर हैं नीचे हरा कलर का कुछ घास हैं।

पन्नी और पेपर से ढका हुआ है जिसको पेंट किया जा रहा है।

और बाहर तरफ कुछ मशीन हैं और साइड में दीवार में रहतिम लिखा है।

और नीचे हरा कलर का घास लगा है।

यहां पर एक दुकान में बहुत सारे इत्र पड़े हैं।

और ये रूम बहुत स सारा सजा हुआ है बहुत सारे सितारे लटके हुए हैं।

और गंगा कीवी नाम के बक्से पर बहोत सारे कीवी रखे हुए हैं।

और नीचे एक दो बाल्टी दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सारे आदमी नीचे बैठे--

नारंगी का कलर के कपड़े पहने खड़ा है।

कुछ लिखे सर डॉक्टर को दे रहे है।